यह बहुत ही शांत इलाका दिखाई दे रहा है।

दिवाल मे एक सिवेज पाइप नजर आते हुए दिख रहा हैं।

सामने ग्रोसरी जनरल आइटम और कुछ भी लिखा हुआ--

यहा टाइल्स भी लगाई गई है।

यहां सीढ़ी बनी हुई भी दिखाई दे रही है।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

सामने बहुत सारी दो पहिया वाहन खड़ी हुई है।

यहां पे बहोत सारे दो पहिया वाहन भी खड़ी हुई है।

यहां सीढ़ी भी बनी हुई है।

दिन का समय व्यतीत हो रहा है।

यहां पर बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं।

प्रेशर जेक पर कुछ रेंज पर रखी हुई दिख रही है।

यह एक जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां गमले में फूल पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।

यह एक मस्जिद का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां कुछ लोग हाथ पैर धोते हुए दिख रहे हैं।